सामने तस्वीर में एक बडा सा कार्यालय दिखाई दे रहा है जिसके दीवालो मे सफ़ेद रंग का पेंट लगा हुवा है।

सफ़ेद रंग की सेन्टेक्स रखी दिखाई दे रही है साइड में पुराना सा घर दिखाई दे रहा है।

ब्रिज भी दिख रहा है कुछ पहाड़िया भी दिखाई दे रहीं।

दी हुई तस्वीर में एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है।